पीछे की तरफ भी दो व्यक्ति नजर आ रहे है साथ में सफेद ड्रेस में पीछे भी एक व्यक्ति है सामने कुछ पेड़ भी है और झंडे भी लगे हुए है।

कुछ लटके हुए भी नजर आ रहे है वैफर टाइप बाहर कुछ कट्टों और बोरियों में सब्जियाँ भी लगी नजर आ रही हैं अंदर दो व्यक्ति बैठे हैं।

बाहर साइड पे दो महिलाएं बैठी हुई हैं इसके गेट के साथ एक बाइक खड़ी हुई है और एक शटर भी खुला हुआ नज़र आ रहा है।

साइड पे दो स्टेच्यू लगे हुए नजर आ रहे हैं और यहां पर कुछ फोटोज भी लगे हुए हैं अंदर जहां कुछ व्यक्ति फोटो ले रहे हैं ।

ये काफी पुराने नज़र आ रहे हैं साइड पे काफी पेड़ लगे हुए हैं कुछ छोटे भी हैं और कुछ बड़े भी हैं।

साइड में एक बोर्ड है जिसपे कुल नजर आ रहा है बिल्डिंग के साइड में सीढियां भी नजर आ रही है।